स्टैचू बहोत लग रहे हो जिसने भी स्टैचू बनाया हो बहोत अच्छी स्टीकर लगाया हो बहोत अच्छी इसकी ट्रेनिंग और बहोत प्यारी स्टैचू लग रहे हैं।

बहोत बड़ी ये हट लग रही है हट बहोत प्यारी सी लग रही है हट ये आई थिंक जंगल के अंदर रिजॉर्ट बना हुआ है जी --